सामने में एक होटल दिख रहा है।

मैदान के किनारे में घास दिखाई दे रहा है।

सामने में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।